और इसमें तीन लड़के है और एक --

ये एक पेड़ है आम का पेड़।

और दिखने में बोहुत अच्छा लग रहा है फिर --

और इस दुकान में ऑटो का सामान भी मिलता है|

और इलाज कराके अपने घर जाते हैं इसमें बहोत सारे लोग हैं इसमें लगी हुई है अस्पताल के बाहर।